इस तस्वीर में एक कार दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है।

सारे बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो ऑरेंज ग्रीन और वाइट कलर के है।

और यह नाली के पास में दो तीन लकड़ी के बोट है।

सामने में ढेर सारे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ये फोटो में कुछ कुछ ढूंढ ले ढूंढ ले चीजें भी आसमान में नजर आ रही हैं।

ढेर सारे रैक दिखाई दे रहे है।

दवाइयां रखी हुई नजर आ रही है।

हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे ऊपर में कुछ फैन भी लगाए हुए हैं।

एक कार का बोनट दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह खराब हो चुका है।

तस्वीर में एक स्कूल का दृश्य दिखाई दे रहा है और जो स्कूल की सारी बिल्डिंग व्हाइट कलर की है।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

और यहां पे फोन पेय का स्कैनर और ढेर सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं।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

रोड के पास कुछ दुकानें भी हैं और कुछ पोल भी दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे घर भी नजर आ रहे हैं।

उसके बगल में एक ऑरेंज कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसके पास कुछ ग्रिल और कुछ शटर बने हुए है।

और ऊपर में सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं।

जिसपे कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर के और पिंक कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे एक सेनेट्री एण्ड हार्डवेयर की दुकान दिखाई दे रही है।

कई दुकाने दिखाई दे रही है जिन सब में बड़े बड़े बोडे रखे हुए हैं।

यहां पे बाहर में कुछ लोग दवाई खरीदने हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पत्ते के चीजें लगाई हुई हैं जो पूरी तरह खराब हो चुके हैं।

इस दुकान के बाहर लगे हुए नजर आ रहे है।